औ इनके पीछे झरना निचे गिरता हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे जैंट्स के कपड़े दिखाई दे रहे है। यह शादी पार्टी मे पहने लायक कपड़े है। जिसे यहाँ पर रखा गया है। यह एक जैंट्स वियर शॉप है ।

इस तस्वीर मे मुझे एक घाट दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ नदी ए सीढ़ियो के ऊपर चलते हुए और बहोत बड़ा मंदिर दिख रहा धार्मिक स्थान हैं ये जहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जो घर है किसी का और यहाँ बाहर की तरफ कच्चा मैदान है जिसमें मिट्टी-मिट्टी है।

इस तस्वीर मे मुझे एक क्लासरूम दिख रहा है जहाँ पर डेस्क पे सबके बैग रखे हुए हैं और दीवारों पर कुछ महानुभव आ लोगों की तस्वीरे लगी हुई है।